सामने में दरवाजा दिख रहा है।

यहां पे एक व्यक्ति बैठा हुआ दिख रहा है।

इस इमारत में बहोत सारी दुकाने हैं।

कूड़ेदान भी रखा हुआ है।

लटका हुआ दिखाई दे रहा है।

नीचे फ्लोर टाइल्स दिख रहा है।

इस दृश्य में सामने एक बिल्डिंग --

यहां पे बहुत सारे लोग भी--

बिल्डिंग के ऊपर तैनीरा लिखा हुआ है।

यहां पे बहोत सारे प्लांट्स भी दिख रहे हैं।

यहां बहोत सारे लोग भी दिख रहे हैं।

सामने में सूरज भी दिख रहा है।

यहां पे बहोत सारे घने पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने में कुछ बड़े पत्थर भी पड़े हुए हैं।

यहां पे एक वैन भी दिख रहा है।

सामने स्कूटी भी लगी हुई है।

यहां पे कुछ घने पेड़ भी हैं।

यहां पे कुछ पेडें भी हैं।

पेंटिंग्स भी टंगी हुई है।

यहां बहोत सारे लोग भी--

आस पास बहुत सारे घने पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

छत की ढलाई हो रही है।

रॉड भी दिखाई दे रहा है।

यह एक दुकान की तस्वीर है।

सामने एक पॉट दिखाई दे रहा है।

उस पर कुछ जीव जंतुओं का--

बहोत सारे घने पेड़ भी है।

हमें पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

बास्केट भी रखा हुआ है।

यहां बहोत धुंध दिख रही है।

इस दृश्य में एक बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है।

एक्सरसाइज करते हुए दिख रहे हैं।

दुकान के ऊपर रॉयल बेकरी लिखा हुआ है।

यहां कुछ वाहने भी लगी हुई हैं।

इस दृश्य में सामने एक इमारत दिखाई दे रहा है।

यहां पे कुछ विद्यार्थी भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक फंक्शन हॉल का दृश्य है।

नीचे कालीन बिछी हुई है।